इस फोटो में कुछ टाइल्स रखी हुई है।

इस फोटो में सभी लोग कुछ लिख रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हैं।

बुक स्टॉल का नाम विज्ञान बुक सेंटर स्टेशनरी --

इस फोटो में मिट्टी भी दिखाई दे रही हैं।